यहाँ पर हमको लोग दिख रहे है जो की कोई बाइक पे बैठा हूआ दिख रहा है कोई ऐसे ही चलते हुए दिख रहा है जो की बहुत ही बढ़िया लग रहा पीछे पानी भरा हूआ दिख रहा है जो की झील लगती हैं। पेड़ दिख रहे है जोकि नारियल जैसा दिखते जोकी बहुत ही बढ़िया बहुत ही प्यारे बहुत ही सुंदर पेड़ लग --

जैसा की हम देख सकते है सामने हमको बैंक दिख रही है जो बैंक हमको वो फेड्रल बैंक दिख रही है जिसका नीले कलर का बोर्ड दिख रहा है जिसका ए.टी.एम दिख रहा है जिसका पीला कलर से नाम लिखा हुआ दिखना पास मे एक बी.बी.ए बी.कॉम--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

शाखा साहेबगंज लिखा हुआ दिख रहा है नीचे आई.वि. भारती स्टेट बैंक लिखा हुआ दिख रहा है पुण्य तथा कंप्युटर क्लास शाखा लिखा हुआ दिख रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया लग रहा शटर हमको ग्रे कलर का दिख रहा है जो की बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर बहुत ही प्यारा लग रहा हैं।